यहां पर स्टेज पर एक परफॉर्मेंस चल रहा है उसमें कुछ स्टूडेंट्स अपना परफॉर्म दे रहे हैं।

और इसके पीछे बहुत बड़ी स्क्रीन चल रही है जिसमें ये सारा वीडियो --

दवाइयां रखी हुई है और यह एक जनरल स्टोर टाइप है।

दीवार है इसे ग्रीन कलर से पेंट किया गया--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

मेडिकल का और सामने कुछ दो टूल्स जोड़ रखे हैं।

खाली के आसपास सफेद कलर की बहोत सारी रोड पर भी--

लाइट लगी हुई है एक दो साइड से रोड गया--

और एक लेडिस भी खड़ी है सामने की तरफ एक व्यक्ति खड़ा--

जो है ब्लू कलर की पैंट थी आस-पास में बहुत सारे घर हैं।

बाइक और स्कूटी खड़ी हुई है कुछ लोग भी खड़े हैं।

जहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं बैठने की व्यवस्था दी गई है बहोत सारी चेयर बनी हुई है।

छोटी छोटी झाड़ियां और छोटे पौधे भी लगे हुए है।

यहां पर बहोत सारा म्यूजिक का सामान रखा है। पियानो हारमोनियम --

पॉलिथीन में पैकिंग करा हुआ सामान भी टंगा है।

गेट के ऊपर की तरफ व्हाइट कलर का बैनर हैं।

कुछ प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं पीछे की तरफ एक फैन लगा हुआ है एक एसी भी लगा हुआ है और गेट क्लोज है यहाँ पर।

आसपास में कुछ भगवान के पोस्टर लगे हुए हैं कुछ फैन लगे हुए--

पास में ही एक रेड कलर की चेयर रखी हुई है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग हैं जो क्रीम और ऑरेंज कलर से पेंट की गईं है इसकी बालकनी में लोहे की जाली लगी हुई--

आसपास शॉप में बहोत सारा सामान रखा है बहोत से बॉक्स से बहोत सारी बाटलें हैं।

इसमें सामान रखा हुआ है आस पास।

वो यहां पर बनाई गई है जिसे काले कलर की टाइल्स से बहोत अच्छे से सुंदर डिजाइन किया है।

कुछ बुक्स और कुछ कपड़े भी यहां पर रखे हुए हैं और एक नीले कलर का बड़ा स्टूल रखा गया है।

और भी बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है और --

आस पास कोई ट्रेन नहीं आ रही है पूरा खाली प्लेटफार्म पड़ा हुआ है यहां पर।

रेड और ग्रीन कलर से यह शॉप पूरी पेंट की गई है और यहां पर बहोत सारा--